ये मॉल के सेकंड फ्लोर का व्यू है यहाँ पे कई सारे लोग हैं कई सारी दुकानें हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ पर--

और यहां पर कई सारे पेड़ भी हैं जो बहुत हरियाली प्राप्त करवा रहे हैं और ये सामने बिल्डिंग है।

ये एक राखी की दुकान है जहां पर बहुत सारी रखियाँ टंगी हुई है।

यहां पर पूरी लाइनिंग हो रही है बहुत सुंदर सा पिच है जिसके साथ हरी हरी घासें है।

सामने एक मैदान टाइप का एरिया है जहाँ से ये फोटो है।

ये एक मूर्ती है जो ब्लैक कलर की है।

बहुत सारे पहाड़ दिख रहें हैं जो बहुत सुंदर है।

ये एक ढाबे का फोटो है जिसमें एक आदमी खाना बना रहा है ढाबे का नाम दिल्ली ढाबा है।

एक जिम का व्यू है जहां पर बहुत सारे वेट लिफ्टिंग के और भागने के लिए कई यंत्र रखे हुए हैं और--

ये एक बुक स्टोर है जहां पर बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ रहे है।

चर्च है जहां पर इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे है।

ये वो जगह है जहां पर सब पेड़-पौधे खरीदने जाते हैं यहां पर कई प्रकार के पौधे दिख रहे है।

नीचे बहुत दुकानें हैं ऊपर लोग खड़े हैं नीचे भी लोग खड़े--